यहाँ बहोत सारे लोग इकठ्ठे हैं ये खेल रही है जिसके माध्यम से लोग काफी --

यह हवाई अड्डा काफी इसका बहुत ही अच्छा है और यह मस्त देखने में है।

बहुत ही सुन्दर बीचो-बीच बोर्ड लगा हुआ है यहाँ के लोग बहुत ही सुन्दर तरह --

यह एक अजीब तरह का नजारा है यहाँ के पेड़-पौधे बहुत ही --

लोग पंक्ति में लगे बहुत शांति मन से वह अपनी काम को कर पाएँगे।

यह एक बहुत बड़ा बेल्डिंग है यहाँ पे काफी तरह के दुकान भी अब लगए है यहाँ पर एक रेडीमेड वस्त्रालय का ही --

यहाँ की लुक बहुत ही सुन्दर है यह बिल्डिंग काफ़ी अमाउंट में बनाया हुआ इसमें काफ़ी रूपए का ख़र्च भी हुआ होगा ।

इस स्टेज पे सजावट बहुत ही सही और अच्छे ढंग से की गई है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

साइड साइड में बहुत-सी हरी-भरी वृक्ष भी लगी हुई है।